ये तस्वीर वाटर पार्क की है जहाँ पर बच्चे और बहुत सरे लोग पानी का मज़ा ले रहे है |

यहाँ पर शादी हो रही है। इस शादी में बहोत सारे लोग आए हैं। कुछ लोग तस्वीर खींच रहे हैं।

यहाँ पर विद्यार्थियों का बहोत ही ज़्यादा रश देखने को मिलता है।

ये किताबों की दुकान है | यहाँ पर बोहोत सारी किताबें और पेन पेंसिल्स रखे हुए हैं ।

इस तस्वीर में एक हरा भरा मैदान है उस मैदान में कुछ टूटी फूटी इमारते भी हैं।

टूटी फूटी दीवारे भी हैं और कुछ व्यक्ति यहाँ की सैर भी कर रहे हैं।

यह तस्वीर ऐक्सिस बैंक की है । यहाँ पर दिन भर लोग अपने जमा खाते और जमा खाते मे राशि का पता लगाने और जमा करने के लिए आते हैं ।

यहाँ पर बच्चे आ कर इन झूलों पर मजे लेते हैं। इस पार्क में बहुत सारे हरे-भरे वृक्ष भी हैं।